यहाँ आसमान जो की अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ लोग पैदल आ रहे है और यहाँ पे पे सवार भईया लोग ऑटो चला रहे है जो के देख रहे है।

यहाँ पे देख रहे है हमारे दादी दादा लोग अअअ की समान बैठे है और यहाँ मैनेजर कंप्यूटर का काम कर रहे है।

यह पेय झंडा वाले खुटा चबूतरा बनाया गया है यहाँ रूम को देखते हुए लगता है यहाँ बैंक है इससे गाड़ी का रंग नीला है और दिखने में अच्छा दिखाई--

यहाँ देख रहे हैं की इधर घर वर बन रहा है और यहाँ भाई साहब का शर्ट का कलर अच्छा है।

और यहाँ पीला कलर का बोरी है यहाँ नीचे पटरा है पिक अप है और यहाँ यहाँ ऊपर सीट यूट छवाया है नीचे पक्का है और ये ढो रहें।

यहाँ पे देखा जाए तो माला वाला लटका है और कुछ किराना वगैरा समान है यहाँ पे पोस्टर पे देखा जाए तो भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर--

इसमें लोगों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी कराटे वगैरह या कसरत वाली कक्षा का हो जिसमें कराटे वगैरह सिखाया जा रहा हैं।

और यहाँ पे काफी सारी लड़किया है जो कि अपने काम में ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं।

ए-- जो भी कई छत की है और देखने में बहुत मस्त लग रही है जो कि शीशे भी लगाए हुए--

दुकान में कई परकार के चीज़े रखी हुई है जोकि कई परकार के सामान है जैसे कई परकार के मिल सकथे।

क्योंकि अच्छे से योगा कर रही हैं और सिखाने वाले भी अच्छे कर रहे हैं जो कि कई प्रकार के कपड़े धारण किए हुए हैं।

इस फोटो को देखने पे ऐसा लगता है जैसे यह फोटो अपने इंडिया का है और पोस्टर पे देखने पे भी पता चलता है की यह फोटो इंडिया का ही है और इसमें लोग भी हिन्दुस्तानी ही है।

ये जहाँ का भी फोटो लिया गया है बहुत अच्छा स फोटो है इसमें हमारे दादा जी चश्मा लगाए हुए है हमारे आंटी जी भी हैं।

ये फोटो फोटो में की-- किसी अ-- ईश्वर का प्रतिमा बनाया गया है ऊपर की ओर मे देखा जाए तो --